यहां बहोत सारे दुकान लाइन बाई लाइन लगे हुए हैं।

रोड के किनारे में बहुत सारे बास्केट सजाए गए हैं।

इसमें बहोत सारे काउंटर एवं उस पे बहोत सारे सामानों को सजाया गया है।

आकाश बिल्कुल साफ एवं काला नजर आ रहा है।

सामने एक बोर्ड है जो मैरून कलर का है।

तथा एक हैंगर टंगा है जिस पर दो कपड़े टंगे हैं।

ऊपर का आकाश बिल्कुल ही साफ एवं सफेद नीला दिखाई दे रहा है।

वहां से होकर के एक तार गुजरा है।

पूरे वातावरण को सजाया गया है लाइट्स के द्वारा।

जाने के लिए फुटपाथ का रास्ता बनाया हुआ है।

एक आदमी ने गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी है।

बाहर से अंदर की ओर रोशनी भी आ रही है।

यहां भगवान की चार मूर्तियां है।

व्हाइट व्हाइट कलर के बहुत सारे लाइट्स भी लगे है।

इसमें बहोत सारे पौधों को एक साथ रखा गया है।

ऊपर का आकाश बिल्कुल ही साफ नजर आ रहा है।

इसमें सामने एक बड़ा सा आईना लगा है जिनमें लोगों की परछाई नजर आ रही है।